जहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय नगर परिषद महुआ और सामने तीन गाड़िया खड़ी हुई हैं।

और अ ग्राउंड है। ग्राउंड में घास दिखाई दे रही है जो काफी हरी-हरी लग रही हैं।

यहापर ये किसी प्रोग्राम की है जहापे काफी लोग दिखाई दे रहे है और कुछ लोग अ प्रोग्राम कर रहे है।

इस तस्वीर में कुछ लोग योगा कर रहे है। कुछ लड़कियां है। सामने दो लोग अ बैठे हुए है।